दुकान में कई सारा समान --

बगीचा है बगीचे के बगल में --

सुन्दर गाछ है लगाया गया है।

रहे है गाड़ी मे है क्या हुआ है नहीं हुआ --

छत में छर दिखाई पड़ रहे है --

ऊपर से तार है।

गेट टाइप का है मार्केटिंग टाइप का है।

खटाल है देखने में अच्छा लग रहा है। मवेस --

बाछी है देखने में अच्छा लग रहे है।